ये एक जगह है यहां पर रिक्शे खड़े तीन चार रिक्शे खड़े हैं और बहुत ही अच्छे फूल और उन रिक्शों पे कलरफुल --

और नीचे तार रखा है और सीढ़ियां लगी हुई हैं और ये गेट लोहे का है चारों तरफ से किसी घर का--

ये उम् अ यहाँ पर बहत सारे बजरी पड़ी हुई है ईँटे पड़ी है और कुछ ट्रके है साइड में--

और बहुत सारा इसमें यहां पे बजर फुट है और इधर दीवारें हैं तो कुछ और ट्रक हैं दो चार सफेद कलर के ट्रक बने हुए--

बादलों का कलर कलरफुल बादल हो रखे हैं और बहोत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा--

यहां पे दो स्टैचू बने हुए हैं उन्होंने भी कोट पहेन रखे हैं पैंट पहन रखी है शर्ट पहन रखी है।

अह ब गेट बना है और वहां पे स्टार फिश की दो फोटो लगी हैं एक आदमी बाहर निकल रहा है वो स्विमिंग पूल में से नहा के और कुछ लोग उसमें--

और अच्छी तरीके से ऊपर पेड वेड सब कुछ हें रौशनी बहोत चमक रही हैं।

लाल रंग की दुकान एक आदमी बैठा है इसमें इधर कमोड भी रखे हैं और कुछ कट्टे रखे है सफेद रंग के।

और कुछ लाईटे लगी है और पाइप लगे हुए हैं बहोत सारे और यहां पे अ कुछ--

और बहोत बड़ा इस अ एक रूम की मकान की तरह बना हुआ है।

एक ने चश्मा लगा रखा है और एक ने चश्मा नहीं लगा रखा है और दोनों ने व्हाइट कलर की शर्ट पेहन रखी है और ऊपर लाइट भी जल रही है।

और कुछ लड़के भी हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं योगा कर रहे हैं और पीछे लोगो बना हुआ है।

पेड़ भी हे और फुआरे लगे हुए हे बेठने के लिए सीटे बनी हुई हैं।

इधर पेड़ लगे हुए हैं कुछ पीले रंग के फूल है उसपे कुछ हरे रंग का पेड़ है पेड़ लगे हुए हैं और बाह अंदर की तरफ कुछ बहो --

यह ये एक ऑफिस का दृश्य है और यहां पर बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पे बहोत सारी ईस्कूटर बाइक --

जिस पे सिसिया रखी हे सर्फ़ रखा हें डिब्बे रखे हैं।

ये एक स्काई जंपेयर ट्रैम्पलून ऊं पेयर की शॉप है जहां पर लाइट लगी हुई है कुछ--

जो कुछ इधर उधर देख रहे हैं और उन्हें कुछ खरीदना है।

और उन्होने अ कलर कपडे पेहेन रखे है और नग्गे पैर है उन्होंने कुछ पेहेन भी नहीं रखा है और अ इधर उधर सिडिया भी है बोहोत सारी --

यह एक पुरानी बिल्डिंग है श्री मेह त हरिहर दास उच्च विद्यालय और बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसमें कुछ व्यक्ति हैं।